ये सैलून है छोटा सा जिस सैलून में एक लड़का एके लड़के का --

एक-एक सामने मंदिरे है अ-अ म जिसमे जिसके सामने मंदिरो के सामने एक कार पार्क --

मैदान है जिसमे हरे घास जमे हुए है और पेड़-पौधे हैं अगल-बगल हरी है बादल नीला और लाल है।